ये पार्सल ऑफिस है किसी तमिलनाडु की और यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं वो अपना पार्सल --

एक सलोन की व्यू है जहां जिसका नाम है ब्लूसिंगटन मेकअप एंड ब्यूटी सलोन --

दिख रहा है मुझे सामने एक छोटी सी पोंड दिख रही है बहुत प्यारी व्यू आ रही है यहाँ से सामने --